दुगो बच्चा है जो चित्र बना रहा है ग्रिल है मैडम बैठल है उधर बहुत सारा बच्चा चित्र बना रहा है बीरेन्च है।